चित्र में एक शोपिंग मॉल के अंदर रैको में बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े पेड़ आसमान टिन का शेड दिखाई दे रहा--

चित्र में एक लड़का सफ़ेद कलर के मग में कुछ पीता हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे बैनर पे सम्मेलन चोदा फेब्रुअरी आयोजक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है गुलदस्ता दिखाई दे रहा है।

चित्र में एक दुकान दिखाई गई जिसके के ऊपर रवि द्रिक्लेअनेर लिखा हुआ है कुछ गाड़िया और साइकिल खड़ी दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहै है।

यहाँ जो आलू भी दिखाई दे रहे है लाइटे दिखाई दे रही है।

दो साड़ियों के डिज़ाइन दिखाई दे रहै है एक सिलाई मशीन दिखाई दे रही है।

चित्र में अमर एंड अमर ड्राई क्लीनर्स की दुकान दिखाई गई है जिसमें सेल्फ में कपड़े दिखाई दे रहै हैं।

चित्र में खूब सारी सीड़ियां दिखाई दे रही है पाइप की रेलिंग लगी दिखाई दे रही है।

बिक्कट दिखाई दे रहै है बैलून से डेकोरेशन किया हुआ दिख रहा है बॉउंड्री वाल खम्बे वायर और पेड़ भी दिखाई दे रहै है।